और सामने की तरफ बहुत सारे पेड़ हैं और नीचे की तरफ जो इसका फ्रंट गेट है वो रेड कलर का है और जहाँ पर सामने की तरफ बहुत सारी बाइक खड़ी है।

यहाँ पर सामने की तरफ एक मंदिर बना हुआ है और इसके पास-पास में और भी मंदिर है।

ब्लैक ब्लू और वाइट कलर का इसका पोस्टर लगा हुआ है और सामने की तरफ एक--

यहां पर एक रूम है जो पूरा व्हाइट कलर का है यह एक मॉल है।

इंडिया का मैप लगा हुआ है ऑरेंज सफेद और ग्रीन कलर का--

अलग-अलग तरह के पौधों को डिजाइनिंग में लगाया गया है उनकी बहुत ही अच्छे से कटिंग की गई है।

यहाँ पर एक मंदिर है जो ऑरेंज कलर का है इसके आसपास बहुत ही भीड़ हो रही है लोगों की--

इन पौधों में लाल कलर के फूल आ रहे हैं पीछे की तरफ आसपास बहुत बड़े-बड़े पेड़ भी है।

बॉटल से और कुछ पैकेट्स से जो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और पूरी दुकान--

जो लाइट पिंक कलर की लाइट ग्रीन कलर की है और आसपास--

अंदर एंट्री दे रहे हैंऔर स्टूडेंट्स अंदर की तरफ आ रहे हैं सभी--

यहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंगें बनी हुई है जो अलग-अलग कलर की है कुछ ब्लू ब्लैक ग्रीन कलर की है।

जिसके बाहर एक लोहे का ब्लैक कलर का गेट लगा है।

यहाँ पर एक चाय की दुकान है जिस पर एक ठेला है और इससे ऊपर की तरफ रिंग्स लगाकर--

यहाँ सामने एक बिल्डिंग बनी हुई है जो ब्राउन और ब्लू कलर की है और--

चुकंदर हरी सब्जियां है नींबू है और बहुत सारी सब्जियां बोरियों में भरी हुई रखी है।

और सामने से रोड जा रहा है रोड पर से बहुत सारे लोग निकल रहे हैं यहाँ पर और सामने भी आसपास सब्जियों की दुकान है।

नीचे की तरफ यहाँ पर दुकानें हैं और दो दुकानें हैं जिसमें बहुत सारा सामान भरा है।